ये फोटोग्राफ बहोत ही सुंदर दिख रहा है में तो यहां जाना जरूर पसंद करूंगी।

यहां पास एक ऑटो वाले भैया हमें दिखाए जा रहे हैं।

जो सायकल मार्ट के सा सामने जस्ट सामने खड़े हुवे हैं ये ये ये दो ऑटो चलाते हैं।

में एक लड़की अपने बाल कटवाने के लिए बैठी हुई है और सामने बहोत ही प्यारा इस व्यू के साथ मिरर लगा हुआ है।

यहां बहोत सारे लड़कियों के इमेजेस भी बनी हुई हैं साड़ी वाली लड़कियों के ये एक सैलॉन है।

और एक छत के ऊपर टंकी रखी हुई है और बीच में--

बहोत सारे मजदूर लगे हुए जुटे हुए मेहनत गर्मी में--

और यहां पास अच्छा भिखारी नहीं है ये लोग ट्रेन के लिए बैठे हैं यहां पर बहुत सारे पिलर है।

वो यहाँ बस एक प्लेट रखी हुई हैं ब्लैक कलर की जो भी टेस्ट हैं इसके ऊपर मेयोनीज डाला गया हैं।

यहां पर सिक नदी भी हमें दिख रही है और जो मंदिर है ना उसके पीछे पेड़ पौधे भी काफी सारे नजर आ रहे हैं।

और काफी बच्चे तो नहीं लग रहे चार ही बच्चे बिचारी मैम --

ये जो लेबर्स लोग रहते हैं ना ये बहोत मेहनत से ये चीज जो बनाते हैं।

और ग्रीन कलर की ग्रास टाइप से पूरा फट्टा बना हुआ जिसमें बै--

नीचे कुछ ग्रीन कलर का गंदा सा कपड़ा पड़ा हुआ है। यहां बहोत सारे रोड लाइट भी हैं।

चार टायर हैं कार के उसके पीछे भी एक व्हाइट कलर की कार जो है स्टैंड है मतलब खड़ी खड़ी हुई है।

ओ यहाँ बस फॅन की फॅसिलिटीज भीं है और ये गेमिंग रूम हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं टेनिस क्रिकेट बॉक्सिंग इस्पंजिंग ।

रेड कलर की चेक्स वाले स्कूल ड्रेस पहनी हुई है और ब्लू ऑरेंज येलो व्हाइट ये सब को ।

फिर भी पेशेंट को लेटा दिया जाता हैं।

यहां पास एक जेरॉक्स की दुकान है यरे ये कपड़े की दुकान भी है।